डाईनिग टेबल में से काफी सारी चेयर्स है और उसके उपर प्लेट्स है और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और इसमें पेड़ भी दिखाई दे रहा है हरे --

यहाँ एक भव्य माता मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे देवी माँ दिखाई दे रही है और उसके--

बैठने के लिए इसमें दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे है और बैलून्स दिखाई दे रहे है ।

इस्पे इस बेड पर एक लैपटॉप रखा हुआ है और --

दो तीन लेडीज दिखाई दे रही है ऑटो दिखाई दे रहा है इसमें --

काफी बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है आस पास में काफी सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

उस में एक आदमी खड़ा है जो काले कपडे पहन कर --

काफी सारे बोरी दिखाई दे रही है जिसमें अनाज रखा हुआ--

पास ही में एक लड़की बैठी हुई है चेयर पर --

क्लास रूम दिखाई दे रहा है जिसमे छात्र --

यह एक पेट्रोल पंप का ऑफिस दिखाई दे रहा है।

उसी के आँगन में कुछ गमले दिखाई दे रहे --

यह एक कांच के जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे एक सोफा दिखाई दे रहा है ।

यह एक तरीके की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ।

उसी के जस्ट बाजु में एक ए सी लगा हुआ --

यह एक काफी बड़ा गार्डन दिखाई रहा है जिसमें--

कुछ सीढिया दिखाई दे रही है ।

और लाल कलर के झाड़ दिखाई दे रहे है ।

यह एक काफी बड़ा स्कूल नज़र आ रहा है ।

यह एक स्टेशनरी की दुकान नजर आ रही है जिसमें एक आदमी--

यहां एक ढाबा दिखाई दे रहा है और उस ढाबे की दिवार पे--

यहाँ एक शादी समारोह दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यहां एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है ।

सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की नीले कलर का दिखाई दे रहा है ।

यहां एक होटल नज़र आ रही है जिसमे काफी सारे --

टेबल दिखाई दे रहे है चेयर दखाई दे रहे है ।

काफी सारा कुछ कलरफुल नज़र आ रहा है ।

यहाँ एक केफे नजर आ रहा है जिसमे काफी सारी चेयर्स नजर आ रही है कुछ टेबल्स नजर आ रही --

एक काउंटर दिखाई दे रहा है कुछ सारी रैंक्स दिखाई --

इसमें काफी सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है और कुछ --

जिसमे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है जो ऊपर नेट की तरफ दिखाई --

यहां कुछ खुला मैदान जैसा नज़र आ रहा है जिसमे काफी सारे --

काफी सारी लाइटो का समावेश दिखाई दे रहा है ।

यह एक कार्यलय जैसा दिखाई दे रहा है।

इसमें एक कंप्यूटर समावेश है इसके आस पास --

यहां एक फलो की दुकान नज़र आ रही है जिसमे --

कुछ लोग अपने हाथो को बांध कर खड़े है।

यहां काफी बड़ा मैदान नजर आ रहा है जिसमें काफी सारे पेड़ पौधों का समावेश --

और कोई इंसान इसमें खड़ा हुआ नज़र --

एक लाइट जलती हुई नज़र आ रही है एक चेयर --

दो कारे खाड़ी नज़र आ रही है ।

यह नज़र आ रहा है जिसमे काफी बड़ा बेड दिखाई दे रहा है ।

काफी सारी गाड़िया भी दिखाई पड़ रही है ।

यह एक होटल नज़र आ रही है जिसमे काफी सारी टेबल्स --